इ चर्च है औ पीछे का प्रतिक चिन्ह देख कर बोल रहा हु एक फॅमिली है भाई ये--

जोकि बैंक वगैरा में काफी लोग बैंक की सैर करते है पैसा लेते है।